पुल है लोहे का ये भी पुल बन रहा है ये भी बन। इसपे भी सवारी यहाँ चढा करेंगे और इसपे भी सवारी चला करेंगे ऊपर बादल है और धरती है जमीन है।

ये पेड़ है। इसमें फल लगे है। बहुत सारे और पेड़ है। घर है रोड है मेला बहुत चल रहा है | यहां पे बिजली के तार है और आसमान है।

अंकल जी बेच रहे है। एक अंकल जी फल के तरफ देख रहे है। दूसरे अंकल जी फलों की तरफ देख रहे है। एक अंकल जी काला बैग टाँगे है। एक अंकल जी हरे कलर का बैग टाँगे है।